बड़ ग्राउंड बना हुआ दिख रहा है नलकिया दिख रही है लेडीज और बच्चे दिख रहे है वाइट कलर के खम्बे दिख रहे है और मकान दिख रहा है |